कसरत करने का भिन्न भिन्न प्रकार का समान रखा हुआ नजर आ रहा है।

बच्चे झूले ले रहे है और कुछ आदमी खड़े हुए बाते कर रहे है।

यह एक छोटी सी दुकान का चित्र है इस दुकान के ऊपर के तरफ गुलाबी रंग के बैनर के ऊपर हिंदुस्तान बैकरी --

ए.टी.एम. के बाहर बोर्ड के ऊपर स्टेट बैंक ए.टी.एम. लिखा हुआ नजर आ रहा है।

यह एक दुकान का अंदर का चित्र है इस दुकान में दुकानदार ने सामान को बहुत ही अच्छे से सजाकर रखा हुआ है ।

यह एक किराने की दुकान के अंदर का चित्र है इस चित्र में दुकानदार ने खाने पीने की अलग-अलग वस्तुओ को --

यह एक सरकारी अस्पताल के अंदर का चित्र है इस चित्र में एक औरत कागज़ पर दवाइयाँ लिखती हुई नजर आ रही है।

यह एक पटरी पर खड़ी हुई रेलगाड़ी का चित्र है इस चित्र में नीले रंग की एक रेलगाड़ी खड़ी हुई नजर आ रही है।

एक आदमी सड़क पर खड़ा हुआ फोन पर किसी से बात करता हुआ नजर आ रहा है ।

यह एक सौंदर्य निखार केंद्र के बाहर का चित्र है इस चित्र में निखार केंद्र के बाहर--

श्री हींग लाल बुक डिपो लिखा हुआ नजर आ रहा है वहीं सामने की ओर तीन ग्राहक खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

यह एक नाइ की दूकान के बाहर का चित्र है इस चित्र में बाहर की तरफ कुछ इस्तिहार लगे हुए नजर आ रहे हैं ।

यह एक घर के बाहर का चित्र है इस चित्र में एक झोपड़ी नजर आ रही है जिसपर पीछे की तरफ दिवार पर --

सब ने बहुत सुंदर पोशाके पहन रखी है वहीं नृत्य करती हुई लड़कियों के ऊपर भिन-भिन रंग की रोशनी पड़ती हुई दिखाई दे रही है।

यह एक बगीचे के अंदर का चित्र है | इस बगीचे में बड़े ही सुन्दर गुलाबी रंग के फूल खिले हुए है ।